यहाँ पे कुछ क्यूब्स ऐसे सब पेपर वर्क करके रखा हुआ है यहाँ रंग-बिरंगे है सारे अलग-अलग शेप्स के पेपर कोंस से सब हैं।

यहाँ पे कुछ स्टील का अ स्टील का तो नहीं दिख रहा है कुछ अलमुनियम का दिख रहा है जो बहुत अच्छा --

घरों को अलग-अलग जाने के लिए आसमान नीला है रात का समय है।

यहां तीन लोग योगा कर रहे हैं। वो योगा मैट करके योगा कर रहे हैं और वो --

थोड़े घर में लाइट ऑन है थोड़े घर में लाइट्स ऑफ है शायद और भी अंधेरा हो तो ऑन रखेंगे नहीं है घर पे इसलिए लाइट्स ऑफ रखी हुई है।

यहाँ शायद एक पार्क है। लोग यहाँ वॉकिंग करने के लिए आते हैं कसरत करने के लिए आते हैं जब थकते हैं तो ये बेंच जो ग्रे कलर की पड़ी हुई --

यहाँं पर दो औरत सर पर कुछ रखे बेचने जा रही है पता नहीं एक ने तो पूरा कवर कर लिया है पता नहीं वह क्या बेच रही है। दोनों ने साड़ी पहनी है एक ने सफेद रंग की साड़ी एक ने लाल रंग की साड़ी --

साइड में बड़े-बड़े अपार्टमेंट सब दिख रहे हैं। अपार्टमेंट का कॉमन प्लेइंग एरिया होता है जहां बच्चे सब आकर खेलते हैं।

यहाँ पे शायद समोसा चाट कोई खा रहा है ये मुझे भी बहुत पसंद है इसमें चना है अ अ ऑनियन सब दिखा रखे है मिक्स करके खाते है कटोरी में और --

यहाँं पे एक आदमी काम कर रहा है और वो कुछ वायर ऐसे वैसे ठीक कर रहा है। लाल रंग का कुछ काले खंबे में और उसने जो पहना हुआ है। वह नारंगी रंग का सेफ्टी जैकेट है। सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी वे में रहने के लिए पहनते हैं।